यहां पे पेड़ है घास उगी हुई है नीचे पौधे लगे हुए हैं और दूर मतलब इतनी--

कांच दिख रहा हैं उसमें दो व्यक्ति दिख रहे हैं एक बैठा है और एक खड़ा है।

और ये जो छोटी छोटी शीशीये इनमें दवाइयां आंखों की और दो बड़ी बोतल भी है।

पीछे और भी कप हैं और डिब्बे भी रखे हैं।

अह और भरे भरे पेड़ होते हैं जैसे जंगल होते हैं और यहां पे हैं ये गाय हैं।

पीच्छे इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है एक लड़की ने व्हाइट ड्रेस एक लड़की ने ओरेंज और पीछे उन्होंने कुर्ता पहन रखा--

और दो आदमी खड़े हैं जो उनके हाथ में भीं एक सीढ़ी हैं।

ये टेबल रखा लकड़ी का और एक और टेबल रखा है आगे कुर्सियां रखी हुई हैं।

और एक लड़का है सामने उसके हाथों में भी दोनों हाथों में कुछ पाइप सी है और सामने व्हाइट कलर के दो घोड़े हैं।

चा मे इसके हाथ में कप है और ये हंस के शायद फोटो खिंचवा रही है।

और बाहर वीइकल खड़ी है एक एक्टिवा और साथ में घर है जो उसका गेट लगा हुआ हैं।

मोटर में फिक्स कर रखी है इसके साथ में मटका रखा हुआ है और एक डब्बा रखा हुआ है।

देखो दो आंटीया ले भी रही हैं एक आंटी मुंह पे--

देखो एक छोटा बच्चा है पर एक लेडिस हैं पीछे पर्दे लगे हुए हैं एक ब्लू और एक पिंक और घड़ी लगी हुई है दीवार पर।

सामने देखो फल फ्रूट की दुकान है बड़ी।

और बाहर देखो शायद ये तो--

खिड़कियां भी बंद है हर जगह की और बाहर बोर्ड लगा रखा है उसे पर भी कुछ बना रखा है इन्होंने सर्कल में।

यहां पे फ्रिज रखा है कुलर रखा है।

स्लीप पे भी कोई मतलब पोस्टर सा रखा हुआ है।